फेडरल बैंक का ए_टी_एम है तथा उसके बगल में ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स लिखा हुआ है।

जहाँ बी_बी_ए बी_कॉम और पी_यू_सी का कोर्स होता है ये साउथ इंडिया का हैं।

शासकीय नवीन महाविद्यालय संकरगढ़ का--

ये तीन माले की बिल्डिंग है जिसमें ऊपर का रंग हरा हैं ।

क्रिकेट फील्ड है जिसमे लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही है स्टैम्प लगा हुआ है।

उपर में क्रॉस का साइड लगा हुआ है और सामने से दो आदमी मोटरसाइकल पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।